लोसलिंक मोनेस्तरी --

यह एक चर्च की तस्वीर है।

और इस मूर्ति को देखने के लिए कई लोग आ रहे हैं।

इस तस्वीर में यह दिखाई दे रहा है कि यह एक चर्च है इस चर्च को लाल रंग में रंग दिया गया है।

जहाँ कई सारे बच्चे पढ़ने के लिए आ रहै है।

जहाँ कुछ लोग भी काम करते हुए दिखाई दे रहें हैं।

तस्वीर को दिन के समय खींचा गया है। इस दुकान का नाम गौरव ऑटो सर्विस सेंटर है।

इस तस्वीर में यह दिखाई दे रहा है कि यह एक चिल्ड्रन पार्क है।

इस स्वास्थ केंद्र के सामने कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

और यह एक वाराणसी की अस्पताल है।

इस तस्वीर मे यह दिख रहा है कि लोहे के बोर्ड मे शहीद डॉक्टर शिवपूजन राय सामुदायिक स्वास्थ केंद्र मुहम्दाबाद जनपथ गाजीपुर लिखा गया है।

इस स्वस्थ केंद्र के अंदर कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। स्वस्थ केंद्र के बाहर एक सरकारी ऐड्वर्टाइज़्मन्ट भी लगाया गया है।

जहाँ बच्चों के लिए छोटे-छोटे खिलौने रखे गए हैं। इस तस्वीर को दुकान के अंदर से खिंचा गया है।